यहाँाँ पे कैबिन है चेयर है लाइट है फैन है।

रगड़े की बॉल दिखाई दे रही है स्पून दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं ब्रिज के ऊपर --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का कारपेट है लाइट के बड़े बड़े झूमर हैं।

बड़ा सा स्टेज है फूलों से सजाए हुए हैं स्टेज को बहुत लाइट्स है यहाँ पे --

ये एक ऑफिस दिखाई दे रहा है डी _डी सन --

यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे बड़ा सा टेबल कुर्सी ए_सी फै --

लड़की दिखाई दे रही है यहाँ टेबल के ऊपर फोन है कुछ पेपर्स हैं।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक ऑफिस है यहाँ पे --

पंखे ज़मीन पे रखे हुए हैं ये बहुत सारे --

यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ ब्लू सफेद --

यहाँ बिल्डिंग के बाहर बड़े बड़े झाड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक ऑफिस है यहाँ पे --

दीवार पे बहुत सारे छोटे छोटे वॉल फ्रेम दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे कुछ कैटरर्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे ज्वेलर्स हैयहाँ पे और यहाँ पे एक बाहर सड़क दिखाई दे रही है।

यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर प्लेट्स है प्लेट में बहुत सारा खाना है।

यहाँ पे नीचे एक स्टोर दिखाई दे रही है।

यहाँ पे बड़ी सी एक गेट दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे बड़ा सा कंपाउंड है स्ट्रीटलाइट है बड़े बड़े --

सारे टेबल और चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं और अगरबत्ती दिखाई दे रही है।

ये मेहीलाये के समाथे पे बहुत सारा सिंदूर दिखाई दे रहा है।

ये एक एक्सिबिशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारी --

ये एक स्टेज है स्टेज पे बहुत सारे लड़कियाँ हैं यहाँ पे --

बड़े बड़े पेड़ आसमान बादल दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे चेयर है सकैबिन है शेल्फे ग्लास काउंटर है।

छोटे लाइटस है फैन है बहुत सारे यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर कपड़े और साड़ियाँ दिखाई दे रहीं है।

पोस्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आसमान और बादल दिखाई दे रहा है।

लाल कलर के चेयर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लाइट और फैन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ फ्लावर प्लांट्स दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक सिल्वर कलर की कार है बड़ा सा टेंपो है यहाँ कार के पास बहुत सारे --

छोटे छोटे फत्तर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे सड़क है सड़क के उस पार ग्रिल है बहुत सारा पानी है यहाँ सड़क पे --

बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ पे आसमान बादल दिखाई दे रहा है।

यहां एक ऑफिस है और यहां पर बहोत सारे चेयर्स हैं।

और यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक पेस्ट्री केक दिखाई दे रहा है और ये केक के ऊपर--

यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है टेबल के ऊपर बहुत सारे --

खाना दिखाई दे रहा है यहाँ रोटी है सालाड्स है नींबू है और यहाँ पे प्याज है बॉल में ग्रेवी है।